जहाँ पे हमें यहाँ पे हमें दो आदमी का चित्र देखने को मिल रहा है जहाँ पे वे एक चार पहिया वाहन को साफ़ करते हुए नज़र आ रहें हैं।

एक आदमी टायर को साफ़ कर रहे हैं और दूसरा आदमी उसके साइड साफ़ कर रहे हैं। इस गाड़ी का नाम होन्डा है। यह एक चार पहिया वाहन है।

यह चाट बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही लजीज देखने में लग रहा है । चाट के ऊपर में प्याज के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं एवं बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है चाट ।